और कुछ बना रहे और गेट के बाहर बहुत अच्छा गार्डन भी बना रखा है।

ये बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है ये गार्डन और यहां पे फ्लावर वगैरा भी लगाए हुए है और यहां --

यहां पर भी कार वहां कार भी खड़ी हुई है और वहां पर बाईकें वगैरह भी खड़ी हुई है बुक और उसके पास में एक और--

दुकान भी बनी हुई है वहां फर्श भी अच्छी है।

ये घर बहोत ही अच्छा सजा रखा है बहोत अच्छी डिजाइनिंग कर रखी--

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर का है ये कलेक्ट्री है ये बहुत बड़ी जयपुर की कलेक्टरी है।

पर और अच्छा पानी दिखाई दे रहे हैं और जहां का नजारा भी बहुत ही अच्छा है उसे--

ये एक कैफे है ये बहुत बड़ा कैफे है वहां पर बैठने के लिए अलग केबिन बना रखे है टेबल वगैरा भी लगा रखी है आइसक्रीम वगैरा --

है और वहां की लाइटिंग अच्छी है और ए_सी वगैरा भी यहां पे लगा हुआ है यहां पर अच्छा दिखाई दे रहा --

यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये यहां पे प्लांट मिलते हैं फुल वगैरा कोइ फ्रूट का पेड़ है।

बी अलग अलग गाड़िया वगैरा और भी यहाँ पे बच्चो के बैट बॉल वगैरा हर आइटम यहाँ मिलते हैं।

जा रही है और वहां पे दूर रेलगाड़ी भी जा रही है और आसपास में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे भी वहां बनी हुई है और बहोत अच्छा नजर --

मुझे एक आरती थारी हरि हरि के नाम से है यहां पे लहंगा सूट गाउन वगैरह यहां सब मिलते हैं।

विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली के नाम से है ये जयपुर में है गम ज्वेलर्स भी है मोहन लाल दिहारक के नाम से भी है।

ये एक मार्केट है यहां पर हर आइटम मिलता है सुपर मार्केट जैसा मार्केट है हाइपरमार्ट जैसा है यहां पर --

ये सब अलग अलग जगह जा रही है बसे और एक बस तो खराब हो रही है उसको ड्राइवर सही कर रहा है।

तरीके के यहां पर पेड़ पौधे वगैरह भी है और वहां पे बाहर एक गार्ड भी बैठा हुआ --

है ये बुक हर के नाम से है यहां पर खिड़की बनी हुई है वहां पे एक आदमी वहां खड़ा हुआ है।

और यह पास में अलग अलग सरिए वहां पे लगे हुए हैं।